इसके बगल में पेड़ भी है एक बहुत बड़ा सा खंभा भी दिख रहा।

इसके अगल बगल बहोत सारे पेड़ भी दिख रहे है इस पर छड़ बहोत सारे छड़ खड़े भी हैं।

ये एक बड़ा सा तालाब है जिसमें बहुत सारे व्यक्ति दिख रहे हैं।

ब्रीज की लंबाई भी बहुत ही दूर तक की है।

टी वी भी लगा हुआ है और एक बाथरूम का भी दरवाजा दिख रहा है।

दो पानी के बोतले भी दिख रहे हैं इसमें बेलशीट वाइट कलर के लगे हुए हैं।

सामने की ओर अ सड़क है जिस पे एक गाय बीचो बीच खड़ी है ।

पानी का टंकी भी दिख रहा है ठीक उसी के सामने एक और ठेला लगा हुआ है वो भी फल का ही है उ ठेला ग्रीन कलर से पेंट किया गया है।

इसका जो फ्लोर है वो वाइट टाइल से बना हुआ है।

तालाब के पानी में हरे हरे घास भी दिख रहे हैं।

इसमें एक थोड़ा गार्डन फूल वगैरह भी खंबे वगैरह भी दिख रहे--